इस फोटो में एक नदी नजर आ रही है नदी में पानी उपवान पर है | नदी के उ--

यहाँं पर बुलेट ट्रेन की फोटो लगी हुई है और-र् ट्रेन का टिकट निकाला जाता है।

नदी को पार करने के लिए एक मजबूत ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज से डेली बहुत से लोग इधर से उधर से जाते है।